यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं।

इसके दूसरी तरफ किनारे पर हरा हरा घास खड़ा है पेड़ खड़े हैं।

और बाहर इकबाल नर्सिंग होम दीवार पर लिखा हुआ है।

बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है सोने चांदी के आभूषण निर्माता।

तो दूसरी तरफ जंगले पर कुछ पर्दे टंगे हुए हैं।

इस पर दो टंकी रखी हुई है काले रंग की --

और दूर एक सफेद रंग का मकान है जिसमें एक छोटा गेट लगा हुआ है।

लगा हुआ है जिस पर एस_बी_आई लिखा है।

बाइक खड़ी है एक रेहड़ा खड़ा हुआ है।

और ऊपर गाड़ी का फ्रंट बोनट का कुछ रखा हुआ है।

साइड में एक लोहे का पिलर है।

जमीन से थोड़े ऊपर उठी हुई है।

प्रेशर का पाइप पड़ा हुआ है और अलग अलग समान है।

उनके पीछे कुछ मैट पड़े हुए हैं जो की फोल्ड कर रखें हैं।

ऊपर छत पर टीन पड़ी हुई है।

मेज पर जग और हरी चटनी रखी हुई है।

पिलर की तरह कुछ बना हुआ है।

एक आदमी किसी चीज के ढेर पर खड़ा हुआ है।

गांधी आश्रम चौराहा नौचंदी रोड मेरठ यह भी उस पर लिखा हुआ है।

साइड में एक जनरेटर रखा हुआ है और बीच में किसी की मूर्ति बनी हुई है।

दीवार पर एक सिल्ली लगी हुई है जीस पर कुछ लिखा है।